पूल के अंदर बड़े बड़े झूले नजर आ रहे है सामने एक बधक भी दिखाई दे रही है जिसके मुँह में एक फिसलपट्टी बनी हुई है।

नाव के अंदर कुछ चप्पू भी रखे हुए दिख रहे हैं। समुद्र के किनारे कुछ पेड़ भी लगे हुए दिख रहे हैं।

दरवाजा भी दिखाई दे रहा हैं जिसके ऊपर जामनी रंग भी लगा हुआ हैं। आसपास कुछ दुकाने भी नजर आ रही हैं।

दिखाई दे रहा है जोकि छत की तरह डला हुआ है सामने गाड़ियो के कुछ पुर्ज़े भी रखे हुए नज़र आ रहे है।

इस चित्र के अंदर एक दुकान दिखाई दे रही हैं जहां पर बहुत सारे संगीत के उपकरण नजर आ रहे हैं।

सामने कुछ घास भी लगी हुई दिख रही है। पीछे बड़े बड़े पड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे --

कुछ दुकाने भी दिखाई दे रही हैं सामने एक मूर्ति भी रखी हुई नजर आ रही हैं ईमारत के ऊपर दो बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

चित्र के अंदर कुछ मसालो के पाकिट भी टंगे हुए नजर आ रहे है सामने कुछ बच्चों के हग्गिस भी टंगे हुए दिख रहे है।